यहां पे भी एक अ क्लीनिक जैसा ही लग रहा ऑफिस जैसा लग रहा है।

सिया वगैरह बेच रहे है और इस बंदे ने ग्रे कलर की शर्ट पहनी हुई--

ये जो आस्था आई_वी_एफ लिखा है ये बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है।

इसके पीछे में ऐसा ही एक बना ऐसा ही एक घर बनाया हुआ है।

जहां पे वाशिंग मशीन है। फ्रिज है। ए_सी है।

पे कुछ खड़ा किया हुआ है और इसके इर्द गिर्द घास वास है।

उस मूर्ति को फूल वगैरा भी डाले हुए हैं फूलों की माला वगैरा भी डाली हुई है।

सब एक बंद एक दो बंदे खड़े है जिस पे बैच लगा हुआ--

यहां पे एक सेनरी लगी हुई जिसपे लिखा है वेज कबाब रोल ।

और वहां पे एक स्कूटी खड़ी है दो चार स्कूटी खड़ी है और दो तीन बाइके भी दिख रही है ऑटो दो भी है।

जो बंदे पेट्रोल डालने के लिए जा रहे हैं वहां स आगे कुछ सेल्स रूम दिख रहा है रिलाइंस का।

वहां पे फूलो का डेकोरेशन है रेड और व्हाइट कलर की फूलों से डेकोरेट किया गया है।

वहां पे एक कुर्सी कुर्सी टेबल दिख रहे हैं सामने।

ये भी एक सड़क की फोटो है वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की बहुत ऊंची ऊंची है ये।

जिन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं तीन बच--

उसकी तितलियां उसके सर पर भी है पीछे भी लगी हुई इनके--

ग्रे कलर का किया हुआ है पूरा ऊपर आसमान पूरा स्काई ब्लू कलर का--

घर के बाहर एक पोल भी है जो लाइटनींग सिस्टम वगैरह के लिए यूज होता है।

उसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है उसने घड़ी भी पहनी हुई--

ये एक घर है जिसको नीचे से शॉप वगैरह भी बने हुए है।

यहां से इसमें ये वुडन की कुछ दरवाजे बने हुए हैं।

ये एक सीनरी भी है बोर्ड जैसा बनाया हुआ है जिस पे बुलबुल की तस्वीर है।

पीछे एक मकान भी दिख रहा है जिसका बीच कलर किया हुआ है।

और वहां दूर से तिरंगा भी दिख रहा है जो ऊपर लगाया हुआ है।

और ये एम_पी बिरला सीमेंट परफेक्ट प्लस की शॉप जैसी लग रही--